ये तस्वीर भारतीय डाक घर की बाहर तस्वीर है। डाक घर कलर रेड है दीवार का कलर सफ़ेद है ऊपर हमे बहुत सारी खिड़किया नजर आ रही है।

यहा पे बहुत सारे दुकाने नज़र आ रही बहुत दुकाने बंद दिखाई दे रही दुकान खुला हुआ नज़र आ रहा है एक बच्चा खुर्चीपे बैठा हुआ नज़र आ रहा है उपर मे बैनर लगा हुआ है उपर मे एक बिल्डिंग बन बन रहा है जो आधा अधूरा दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे दुकान खुली हुई नजर आ- रहा है दुकान के अंदर एक पंखा टेबल नजर आ रहा है कुर्सी नजर आ रहे है बाहर बिजली की मीटर नजर आ रहे है दुकान के बाहर मे ग्लास दिखाई दे रहा है पोस्टर लगे हुए दिखाई दे रहा है।

हमे बहुत सारी बिल्डिंग नजर आ रहा है। बहुत सारी गाड़िया खड़ी है। जिसमे स्कूटी साइकल बाइक दिखाई दे रहा है और यहा पर ड्रम दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे बड़ा सा बिल्डिंग नजर आ रहा है जिसका दुकान दरवाजा बंद है शटर लगा हुआ ऊपर मे खिड़की की नजर आरी नीचे भी बहुत सारी खिड़कीया नजर आ रहे है नीचे बहुत सारी हरी-हरी घास दिखाई दे री बड़ा सा पेड़ दिखाई रही बडा सा पेड़ दिखाई दिनका समय है धुप पड़ी है।

आ रहे है नजर आ रहा है दिन का समय है धूप पड़ी है।

बहुत बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे। बच्चो के लिए स्लाइड्स भी दिखाई दे रहे। बिजली के खम्बे दिखाई दे रहे। पीछे मे एक बड़े से बिल्डिंग नजर आ रहा।

शाम का समय है एक व्यक्ति गाड़ी लेते जाता दिखाई दे रहा है बिजली के खम्बे दिखाई दे रहे बाउंड्री वॉल दिखाई दे रहा बहुत सारी बिल्डिंग दिखाई दे रहे बिल्डिंग मे बहुत सारी खिड़किया नजर आ रही दरवाजे नजर आ रहे।

दिखा रहे ते रहा । नीचे बहुत कचडा नजर आ रहा है। पीछे मे बहुत बड़े पेड़ दिखाई दे रहे। बहुत सारी घर दिखाई दे रहे है। बहुत सारी खिड़किया दरवाजे दिखाईं दे रहे--